यहां एक स्कूल दिखाई दे रहे हैं इस स्कूल का बाहर में वॉल जैसे बना के रखा हुआ है।

यह एक घर दिखाई दे रहे हैं इस घर के ऊपर में बोर्ड सब भी चिपका के रखा हुआ है।

यह एक बड़ा वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग के बाहर में फोटो जैसा ऊपर में चिपक कर रखा हुआ है।

सामने मे बहोत सारा पेड़ ये सब दिखाई दे रहे और एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहे--

ब्लू का बीच में एक बड़ा वाला ड्रम भी दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी ये सब दिखाई दे रहे हैं घर का बाहर में बहुत सारा गाड़ी ये सब भी रखा हुआ है।

दूर में एक घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस घर का साइड साइड में बहुत सारा कॉपी बुक यह सभी साइड में रखा हुआ है।

अंदर में बकेट ये सब दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में पंखा और लाइट ये सब भी जल के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर दिखाई दे रहे है इस घर का अंदर बहुत सारा लोहा ये सब रखा हुआ है।

आगे में कुछ फेंसिंग ये सब लगा के रखा हुआ है।

ऊपर में डिस्को लाइट ये सब भी सजा के रखा हुआ है।

यह एक बाजार के अंदर बहुत सारा आदमी लोग बैठ के सामने में मीट काटते दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में एक आदमी भी बैठ के दिखाई दे रहे हैं।

एक स्विच बॉक्स भी बनाके साइड में रखा हुआ है।

कमरे में वाल का ऊपर सफेद रंग का कलर पेंट करके रखा हुआ है।

यह एक गहरी रास्ता दिखाई दे रहे हैं।

इस रस्ता का साइड में मूर्ति ये सब बना के रखा हुआ है।